यहाँ पर एक सामने एक सीन दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक सड़क गई हुई है जो व्हाइट कलर गी ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है यहाँ सामने एक कुर्सी रखी हुई है ।

हमें दो डस्ट्बिन दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ है सुखा कचरा और गीला कचरा नीले नीले कलर के एक डिब्बा है एक ग्रीन कलर का है ।

यहाँ पर बाजू में स्टेशन दिखाई दे रहा है स्टेशन पे एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ बाजू में एक पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ कोई दिखाई दे रहे है ऊपर एक टीन शेड लगा हुआ है टीनें दिखाई दे रही है खंबे दिखाई दे --

एक चटाई लगी हुई है जो ग्रीन कलर की है यहाँ पर नीचे टाइल्स लगी हुई है जो सफेद कलर की है कुछ कपड़े पैक देख पैक दिखाई दे रहे है कुछ खुले दिखाई दे रहे है यहाँ पर दो सरिया टंगे दिखाई दे रही है एक गुलाब कलर की एक ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही--

यहाँ ऊपर बैलून्स लगे हुए है यहाँ पर बैलून्स के दो प्रकार दो कलर के दिखाई दे रहे है रेड कलर और सफ़ेद कलर के नीचे टाइल्स लगी हुई है जो सफ़ेद कलर कि दिखाई दे रही है।

ऊपर इसके ऊपर कंप्युटर दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर पिछे टेबल रखी गई यहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई है इसमे बैठे हुए हैं यहाँ पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है रेड कलर का उसमें सफेद कलर ल--सफेद अ--कलर से लिखा हुआ है प्रखर सर्जिकल हाउस --